ये लॉज का चित्र है और जैमाला का स्टेज भी यही है |

और सब लोग गाना गा रहे है और कीर्तन भी हो रहे हैं।

और बहुत सारे सुंदर-सुंदर जयमाला भी है यहाँ पर और बहुत भीड़ भी है।